जिसके साइड में और खंभे भी दो लगे हुए हैं।

पीछे की ओर छोटे छोटे कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

और इसके अंदर पिलर नजर आ रहे हैं ऊपर के सब व्हाइट नीचे का नीला उसके नीचे लाल।

और गाजर भी नजर आ रही है और हरी धनिया भी नजर आ रही है।

और यहां पे बहुत सारी टेबल भी लगी हुई है।

और दो लैंप लगे हुए हैं दोनों साइडों में। एक टेबल भी छोटी सी रखी है व्हाइट वाली।

ऊपर की ओर डिजाइन भी पड़ी है पिलर टाइप में।

इसके अंदर छत का कलर व्हाइट हुआ है।

और लाइन से काउंटर भी बड़े बड़े लगे हुए हैं जिसके अंदर शीशा है और उसका कलर है लाल।

इसके अंदर पीछे की ओर एक बड़ी सी टंकी नजर आ रही है जिसका ऊपर का कलर दिख रहा है नीला और व्हाइट ।

पीले वाले कुछ फूल भी नजर आ रहे हैं आ कुछ ऑरेंज टाइप में फूल भी नजर आ रहे--

वाइट कलर के फूल है लाल कलर के फूल है नीले फूल है ऑरेंज है पीले फूल है।

इसके अंदर एक स्टील वाला स्टेपलर नजर आ रहा है।

और एक हेडलाइट भी दिख रही है नंबर प्लेट भी दिख रही है।

और उसके अंदर नीचे की ओर पटरी नजर आ रही है लंबी लंबी लाइन से बिछी हुई हैं।

और एक आग बुझाने वाला सिलेंडर भी रखा है नीचे कोने में।

और साइड में भी पत्थर गेट बने हुए हैं छोटे छोटे शायद मंदिर हैं।

बहोत सारे डंबल भी नजर आ रहे हैं काले कलर के।

और कुछ इसमें गिटार रखे हुए हैं जो बहुत पुराने टाइम पे अलग अलग किस्म के हैं।

एक बाइक जाती हुई दिख रही है दो चार आदमी भी हैं यहाँ पे।

एक बोर्ड लगा है लाल कलर का जिसपे व्हाइट कलर से लिखा हुआ है।

औ कार की कुछ फोटो भी पोस्टर में लगी हुई है लैन से।

सामने की ओर काउंटर एक लगा हुआ है जिसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है और काउंटर में लाइटे भी लगी हैं।

जमीन में देखो पत्थर बहुत सारे लगे हुए हैं।